और येलो कलर है और पिस्तौल दिखाई दे रहा पिक्चर में और ये है।

स्कूल व्हाइट कलर है और आगे में टाटा मोटर्स लिख के दिखाई दे रहा हैं।

कबर्ड में विंडो लेफ्ट साइड में है।

तीन दुकान जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है और पोस रेड कलर है।

चेयर के बीच मे घास लोग हैं।

हॉर्लिक्स लुक दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में येलो कलर का कुछ सामान है ऊपर में।

इसको देख के हैं शर्ट के ब्ल्यू कलर हैं ब्लैक पहने हैं चप्पल नहीं पहने हैं।

और ये लोग का कोच है लड़की और ये ब्लेक कल का टीशर्ट पहन के है जींस ब्लू कलर का पहन के है।

इस साइड में बहुत सारा व्यक् लोग दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर रख के।

टीचर के लिए एक है सर जो कुर्ता पेहन के है येलो कलर का।

शीशा से बनाके है जो मिरर का तरह है।

पिक्चर में येलो एंड ब्लैक का घर दिखाई दे रहे है।

कवर में ऊपर में गोल्डन कलर का जीसस का मूर्ति है सबसे ऊपर में क्रॉस दिखाई दे रहा है वाइट कलर का।

इस पिक्चर में दो घर दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला ब्ल्यू कलर है।

एक ग्राउंड में मोटरसाइकल दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का।

ये पिक्चर में एक लड़का व्यूज को देखते हुए दिखाई दे रहा है।

और पीछे तरफ दिखाया गया है अह कुछ ब्लैक एंड येलो कलर का कुछ पत्थर में बैठ के है।

बाइक पार्क कर के दिखाई दे रहा है और बाइक में भी दिखाई दे रहे हैं।

दुकान कलर ब्ल्यू है साइड साइड में ब्लू कलर दिखाई दे रहे हैं आगे में वीवो लिख के दिखाई दे रहा है ब्ल्यू कलर में।

ये पिक्चर में दुकान का डेकोरेशन करके दिखाई दे रहा है बैलून से।

वहां पे बी_डी_डब्ल्यू_आर_एल_डी स्कूल लिख के है बड़ा से।

सब्जी के लिए टमाटर ब्रिंजल और भिंडी लोग दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में राधा और कृष्ण का मूर्ति दिखाई दे रहा है सुंदर से।

बाहर में लाइट बफ दिखाई दे रहा है जला के वायर भी दिखाई दे रहा है।